मुझे यहां पर एक बहुत सुंदर बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

पानी की बोतल दिखाई दे रही है।

और कुछ हरे भरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

इसमें कुछ आदमी दिखाई दे रहे हैं।

एक छोटा सा पानी का कैंपर दिखाई दे रहा है।

सामने लकड़ी के बॉक्स दिखाई दे रहे हैं।

उन पर से झरना गिरता हुआ दिखाई दे रहा है।

बहुत सारी बड़ी बड़ी मशीने दिखाई दे रही है।

कुछ आदमी दिखाई दे रहे हैं।

इसमें कुछ बैनर लगे हुए हैं।